दीवाल पर लाल और नीले रंग से कलर किया गया है और लिखा है सत्य मेव जयते।

एक बड़ा सा मॉल नजर आ रहा है।

यहां पर दो बड़े बड़े वृक्ष नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग भ्रमण करते हुए दिख रहे हैं।